दिर भगवा रंग का है और हनुमान जी ने हाथ में पर्वत उठा रखा है।

यहाँ किसी ऑफिस की तस्वीर है जहां पर दो तीन बिल्डिंग बनी हुई हैं यहां पर बाउंड्री बनी हुई हैं और फैंसिंग लगाई गई हैं।

यहाँ एक फल फ्रूट का ठेला है यहाँ पर तरबूज पपीता अनार केला मौसंबी संतरा बहुत सारी आदि चीजे रखी गई है।

यहाँ पर पीछे शटर लगे हुए हैं और दुकाने बनी हुई है। एक--

और एक पानी का टाका भी बना हुआ है। यहाँ पर एक पेड़--